यहां पे लग रहा है एक मंदिर में है।

और वहां पर गोल्डन कलर की मूर्ति है जिसके आगे बहुत सारे जन बैठे हैं पूजा कर रहे हैं।

अ बीच में रास्ता है छोटा सा जाने के लिए।

तो अ उम उम्म अराउंड भी उधर उम बंद किया हुआ है नेट से।

आ उम्म आगे बच्चे बैठे हैं कोई कंपटीशन चल रहा है वो कुछ बना रहे हैं पीछे ग्रिल से बंद किया हो--

यहां पे दुकान दो-तीन दुकान भी दिख रही है ईंटें भी हैं पत्थर भी हैं अ --

और पीछे भी उसमें शेल्फ बहुत सारे हैं जिसमें बहुत सारी --

अह तो अह अ यहां ग्राउंड पूरा अ बंद किया हुआ है।

और साइड में एक पुल सा लग रहा है लेकिन पूरी तरह से दिखाई नहीं दे रहा--

यहां तीन स माले की बिल्डिंग लग रही है वाइट कलर का पेंट किए हुई ।

वहां पे एक टेबल है वहां पे कुछ और चीजें भी हैं।

तो अंदर शॉप है आदि खुली है उसके बाहर तीन चार अ कुर्सियां भी हैं और रेड कलर --

वहां पे भी सीढ़ियां है लकड़ियां दिख रही है सैंड नीचे है।

अ यहां पे पीतल के बहोत सारे नट लग रहे हैं बहोत सारे नट हैं वहां पे पीतल के।

अह साइड में भी अ एक बॉर्डर लगा हुआ है सीमेंट का।

एक शेड लग रहा है ऊपर से रोड्स लगे हैं स्टील के उस परे टिन लगा है और नीचे वहां पर ड्रम लग रहे हैं दो-तीन ड्रम है।

साइड में भी ड्रम दिख रहे हैं बोरियां दिख रही है नीचे और कुछ नहीं दिख रहा है।

यहां पे ये मजदूर लोग अ मिशिन में रेत पानी बाकी चीजें डाल रहे हैं जो वो पूरा मिक्स कर रहे हैं वहां पे।

वहां पे एक आर्मी वाला खड़ा है यूनिफॉर्म पहन के।

एक एरिया दिख रहा है अ सड़क जैसे वहां पर एक वैन भी खड़ी है।

और साइड में एक छोटा सा बिल्डिंग टाइप है--

एक बड़ा सा गार्डन लग रहा है।

तो ऊपर थोड़ी पहाड़ी भी लग रही है तो नीचे ग्रास भी है।

वहां पे एक साइड पे फूल भी लगे हैं और ग्रिल से वो पूरा बंद है।

क्योंकि वहां पे एक बैनर लगा है जिस पे पी_पी ह्यूमन वॉरियर सिक्योरिटी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के नाम से है।

और नीचे भी एक और बोर्ड लगा हुआ है साइड में ऑरेंज कलर का कलर किया हुआ है।

मम मा माउस मिकी माउस --

तो वहां पे वो जमीन को जोत रहे हैं।